यहाँ पे हमें एक बोलोरो दिखाई दे रहा है जो की सड़क पे खड़ा हुआ है उसके अगल-बगल बहोत सारे घर है।

यहाँ पे हमें एक जेंट्स दिखाई दे रहा है जो कि पीठ पे काला बैग लिए हुए हाथ में फ़ोन लिए हुए वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन कर के --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

और यहाँ पे कार जैसा लगाया गया है और यहाँ पे पानी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे हमें एक फील्ड दिखाई दे रहा है जिसमें बच्चे खेलने के लिए आते हैं यहाँ पे एक बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैंजो की फिसलने के लिए --

यहाँ पे हमे एक सोफा दिखाई दे रहा है और सोफा के साइड में दो कुर्सियाँ लगी हुई है और वहाँ पे घर दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पे हमें एक फील्ड दिखाई दे रहा जिसमे तीन गिलिच लगी हुई है और चॉक से घेरा हुआ है।